टेबुल है लगा हुआ दुकान में और मार्बल लगा हुआ है ।

ये देखने में ऑफिस लग रहे है और इसमें कुछ चेयर लगे हुए हैं और कुछ पंखे लगे हुए हैं।

जो की और दरवाजा भी लगाया हुआ है चार पाँचठो और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और बकरे के चार टांग है दो कान है दो आंख है।

चिल्ड्रेन कोचिंग देखने को है और इसमें ब्रेंच बहुत संख्यो में लगे हुए है और बहुत हरे-भरे बच्चे भी दिख रहे है बहुत संख्यो में।

और बैलून भी लगे हुए है और कुछ बल्ब भी दिख रहा है पंखा भी दिख रहा है इसमें।